एक अ डिजाइन वाला गेट दिखाई दे रहा है जिसपर बहुत बड़ा घंटा दिखाई दे रहा है ।

जहां पर बोहोत सारी लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बास्केटबॉल रनिंग लगी हुई है।

कमल के फुल में बैठी हुई है।

दिखाई दे रहे है बहुत --

कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है दो साईकल खड़ी हुई दिखाई दे रही है नीले कलर का बैनर --

यहाँ बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है बो --

यहाँ हमें बहुत बड़ा खुला मैदान दिखाई दे रहा है खुला आसमान दिखाई दे रहा है ।

यहाँ हमें बहोत बड़ा एक रोड दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत --

क्रीम दिखाई दे रहा है जिसपर बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रही है एक गेट दिखाई दे रहा है।

और लाइट लगी दिखाई दे रही हैं और ए.सी. दिखाई दे --